इसकी जो गर्मियों की टाइमिंग है वो ग्यारह बजे से साढेदस बजे तक की है और सर्दियों में जो टाइमिंग है वो ग्यारह बजे दस से बजे तक की है ये शिमला की जगह है।

दोनों ही है ये एक ऑडिटोरियम हॉल की तरह है और बहुत बड़ा हॉल भी है यह--

फोटो खींच रही है एक छोटी सी गुड़िया बैठी हुई है इसमें एक पानी छिड़कने वाला भी है।

इसके आगे दो गाड़ियां खड़ी हुई है एक रेड कलर की एक व्हाइट कल--

जैसे कि गोभी भिंडी पालक पत्ता गोभी झाड़ू वगैरह कराने का सम--

यहां इसमें एक दुकान दिखाई गई है जो दुपट्टा सेंटर की है।

इस पिक्चर में एक स्नैक बार कीफोटो है।

यह एक पटरी की हैं जिसमें रेल गाड़ी चलती है।

के पास मेरे को चाय ततंबू वगैरह लगे हुए हैं पेट लगे हुए हैं इसमें और अभी कोई भी यहां पे ट्रेन नहीं है बिल्कुल खाली और साफ सुथरा है।

प्लेन येलो कलर की साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ है और एक ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है साड़ी पहनी हुई हैं।

यह एक मोबाइल की शॉप है जिसमें ढेर सारे मोबाइल मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं एक इसमें चेयर --

ल और इसमें दो-तीन बंदे भी खड़े हुए हैं।

का रंग लाल रंग का है और सफेद रंग की खिड़कियां बनी हुई है।

ये दो तीन मुझे इसमें लोग भी दिखाई दे रहे हैं और इस पे एक पिलर लगा हुआ है उस पे लिखा हुआ है।

तीन चार बसेस खड़ी हुई है कोई ग्रीन कलर की येलो कलर की वाइट कलर की--

में घास फूस और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें एक मैगी वगैरह की शॉप भी है और पतंजलि का इसमें रामदेव बाबा के फोटो की लगी हुई है।

इसमें मम्मी बेटा खड़े हुए हैं भगवान जी की पूजा कर रहे हैं एक घड़ी भी दिखाई दे रही है।

के आगे पैराडाइज ट्रेलर्स के बना हुआ है किचन है। दो तीन बंदे खड़े हुए हैं।